को भी यह चीज ऐसे दिखाई दे रहा होगा जैसे की कुछ था ही नहीं और आपको इस बारे में क्या कहना है आप मुझे इसमें देखके--